एक लेडिस के हाथ में पर्स है और एक झोला दो झोले दिख रहें हैं। एक अंकल के हाथ में पर्स है एक लेडिस खुर्सी पर बैठी हुई है और यहाँ पर बहुत कुछ चीज़े है।

यह भैया का हेअरकट तो दिख रहा है हेअरकट हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे हेयर गिरे हुए दिख रहे है।

एक भैया बैठे हुए है जो आईफोन से बात कर रहे है और पीछे बहुत अलग अलग प्रकार की बुके रखी हुई है और --

बहुत सारा कचरा दिख रहा है यहाँ पर बहुत दूर प्रदुषण दिखाई दे रहा है।

यह सेलोन है जिसको फूलो से डेकोरेशन करा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारा कचरा फैला हुआ है और दो बाइक खड़ी हुई है एक इस्टूल रखा हुआ है और दो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए है।

और यहाँ साइकिल रखी हुई है और दो बाइक भी रखी हुई है और यह स्टेट बैंक टिनो से बनी हुई है।

सारी बाइक है फूलो की दुकान भी है और बहुत बड़ा आसमान दिख रहा है और यहाँ बिजली के तार भी दिख रहे है।

यहाँ पर दो-तीन सीमेंट की बोरी दिख रही है। एक अंकल --